तस्वीर में एक फल की दुकान को दर्शाया गया है जहां एक कैरेट रखा हुआ है रेड कलर का उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का कैरेट है।

इस तस्वीर में एक प्लॉटर पहै जो बिल्डिंग बनवा रहा है और एक को बता रहा है इंजीनियर है।

इस तस्वीर में एक सैलून को दर्शाया गया है।

जहां बाहर एक बाइक खड़ी है।

और अंदर कुछ मिरर दिखाई दे रहा है जहां एक आदमी बैठा हुआ है।

इस तस्वीर में एक पहाड़ को दर्शाया गया।

और एक बाइक पे एक आदमी उतर रहा है।

के बगल में एक आदमी जो रेड कलर का शर्ट पहना हुआ है।

इस तस्वीर में एक लाइब्रेरी को दर्शाया गया है।

जहां कुछ पेड़ पौधे हैं।

इस तस्वीर में एक सैलून दर्शाया गया है सैलून को जो बड़ी शॉप के जैसा सैलून है।

कुछ मशीन दिखाई दे रही हैं।

अंदर एक ट्रैक्टर खड़ी है बाहर बोलेरो और एक बाइक खड़ी है।

तस्वीर में एक ब्लैक कलर की कार दिखाई दे रही है।

तस्वीर एक दर्शन नर्सिंग होम की है यहां डॉक्टर अंश वर्मा--

बाहर बोर्ड है और यहां खून की जांच लिखा हुआ है।